आसमान खुला हुआ है वैन की छाया भी दिख रही है छाया के साथ साथ देख सकते हो आप--

ताला लगा हुआ इसके बाजू में देखा कि एक स्टूल रखा हुआ है स्टूल के बाजू में एक और कवर्ड बॉक्स है कवर्ड बॉक्स बाजू में दरवज्जा खुला है अंदर जाओगे एक और दरवज्जा खुला है मकान है।

देख सकते हो कि एक मैदान है मैदान है जहां घास लगी हुई है बहोत से जंगल है घना हुआ जंगल है उसके ऊपर देखो के घर--

धनिया है धनिया मिर्ची रखी हुई है गाजर रखी हुई है तेंदुआ रखा हुआ है देखो मूली और शकरकंद रखा हुआ है सामने देखो एक लड़का खरा हुआ है।

एक पलंग है पलंग के ऊपर कत्थे कलर की टी शर्ट रखी हुई देखो ब्लैक रखी हुई है।

देख सकते हो कि ये कोई कुछ लोग कथक सीख रहे हैं कुछ मैडम है जो कथक कर रही है।

तेल रखे हुई है सर्फी रखी हुई है जिसमें दवाइयां बहोत सारी काउंटर में रखी हुई है देखो की एक सर्फ़ में पानी रखी--

बोट लगा हुआ है नीले कलर का इसमें एक डब्बा रखा हुआ है जहां देखो पेर ही पेर लगे हुए है आजू बाजू पेर --

देख सकते हो कि एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में देखो कि बहोत बड़ी बिल्डिंग है बाजू में एक नीले कलर की बिल्डिंग है बाजू में कांच की अलग बिल्डिंग है नीचे कैंपस में देखो कि पूरा ग्राउंड खा--

केले के पेड़ लगे हुए हैं आसमान खुला हुआ है देखोगे पार्किंग में बहोत सारी कार --

देख सकते हैं कि एक सैलून है। सैलून उसके नीचे देखो की लिखा है नीचे देखो की एक--

हरे कलर के पाइप हैं एक सामने एक गाड़ी खड़ी है बुलेट उसके सामने बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं ऊपर देखोगे कि खंभा लगा है खंभे की बिजली की तार जा --